एक जगह एक बीच में से जगह है बठे भाटे पड़े है बठे मोर भी खड़िया है मोर आपके पंखां न फेला रखिया है --

एक बाइक खडी है और इन टाबुक पड़ी है और अंदर कोई लाल लाल से खड़े है पड़े हैं।

एक फ्रिस के अंदर फूल बोहोत से गेंदे फूल पड़े हुए अंदर एक गुलाब का फूल पड़ा है।

यह एक रोड है हाईवे रोड सी है बीमे अंदर गाड़िया खड़ी है टमपुडे चल रहे है कोई खड़े हैं आदमी चल रहे हैं।

एक जगह पानी है पग पानी मैं हरी हरी घास उग रही है एक बी के अंदर बतख है बतख राखिया कलर की है और पीले पग है लंबी लंबी चोंच है उनको चलने लग री है।